जहा कई लोग दर्शन करने आये हैं और यह काफी हरा-भरा पहाड़ है कई लोग यहाँ पर फोटो भी ले रहे है।

जिसपर कई बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पर कई लोग दिख रहें हैं जो अपना फोटो खिंचवा रहे हैं।